इस चित्र में हमें कुछ बच्चे नजर आ रहे है।

जो एक ग्राउंड में खेल रहे हैं साथ में उनकी टीचर भी हैं।

जहां बहुत सारे लोग हैं जो पेट्रोल डलवा रहे हैं एक ऑटो भी खड़ा है दो लोग बाइक पर भी जा रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक स्कूल नजर आ रहा है जो नीले कलर से पेंट है।

इस चित्र में हमें एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो कि एक कॉलेज है।

इस चित्र में हमें एक ठेला नजर आ रहा है जिस पर बहुत सारे--

इस चित्र में हमें एक मंदिर नजर आ रहा है।

एक आदमी इनकी पूजा कर रहा है यहाँ एक गगरा भी रखा हुआ है कुछ पूजा का सामान भी है कुछ थालियाँ भी नज़र आ रही हैं जिनमें कुछ रखा है।

बहुत से लो बैठ के काम कर रहे हैं।

ढाबे के साइड में एक टी स्टॉल भी है।